एक घ घर के ऊपर मंदिर बनाया हुआ है।

त अ इटा से घेरा हुआ है.

बलक तार पलक बोर्ड यह सारा सामग्री बनाने वाला है इस दुकान में.

महिला दिखाई दे रहा है और लड़की दिखाई दे रहा दे रही है एक लड़का खड़ा है दलिया में सामान रखा हुआ है.

डॉग दिखाई दे रहा है उसने स पेंट किया हुआ है.

डांस करने वाली लड़की खड़ा है।

इस तस्वीर में तीन घर दिखाई दे रहा है.

इस तस्वीर मे पोस्ट ऑफिस दिखाई दे रहा हे.

इस तस्वीर में पेट्रोल का गाड़ी दिखाई दे रहा है एक आदमी बैठा हुआ है

ये लाइन का पुल हे पेड़ हे और पत्थल का टाइल्स हे.